यहाँ पे बच्चे सब योगा कर रहे हैं।

ये मेला जैसे लग रहा है।

और बाहर बाइक स्कूटी भी खाड़ी हुई है।

ऐसे सबको छत कर लेना चाहिए क्यूंकि मड़ी-टट्टी रहता है तो उसमें पानी भी आ जाता है बारिश के समय में सेम में हो जाता है घर ऐसे।

वो उसकी पेरेंट्स भी खड़ी हुई है ये मैम लग रहा है कि अच्छा प्रोग्राम किये है तो उसको गिफ्ट दे रही हैं |

पेड़-पौधा है छोटा-छोटा है इधर पत्थर भी है ये बहुत अच्छा भी लग --

कॉमर्स का नोटिस है और ये पेड़ पेड़ बनाया गया है बोर्ड पे अच्छा लग रहा है देखने में सजावट अच्छा किया गया है यहाँ बेंच बेंच सब है उस पे ड्रोल भी है अच्छा है बुक-उक रखने के लिए सुविधा अच्छा किया गया --